पेट्रोल पंप की छत उजले रंग की है और चारों तरफ से नारंगी और ब्लू रंग की उसकी दीवाल है।

तस्वीर में कई सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में पेड़ के कई शाखाएं नजर आ रही है।

तस्वीर में एक औरत गुलाबी रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं।

इस तस्वीर में एक लड़का धुंधला चेहरा वाला खड़ा है।

पीछे दो लड़के एक दूसरे से बात करते हुए दिख रहे हैं।

तस्वीर में शायद दो कुर्सियां लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक आदमी खड़ा है जिसका चेहरा धुंधला हैं।

पीछे की दीवार पीले रंग की है।

तस्वीर में लड़के की कान दिखाई दे रही है।

पीछे शायद गुलाबी रंग की भी आधी दीवाल लगी र हुई है।

इस तस्वीर में चार गेंद रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में पहला गेंद हरा और दूसरा गेंद भूरा तीसरा गेंद उजला काला और चौथा गेंद लाल रंग का है।

इस व्यक्ति ने नीले और उजले रंग की एक शर्ट पहन रखी है।

पीछे की दीवाल का रंग उजला है। जिस पर एक तारे के समान आकार का कुछ बना हुआ है।

यह आयोजन शायद किसी खुले मैदान में मनाया जा रहा है।

यह शायद किसी पहाड़ की तस्वीर है।

पहाड़ पर कई सारे लोग चढ़ते हुए नजर आ रहे--

एक लड़के ने सफेद रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

पहाड़ के ऊपर सफेद आसमान नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में ईसाई धर्म का उपयोग किया गया है।

कर ऐसा लग रहा है जैसे दो व्यक्ति ईसाई धर्म के लिए गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं।

एक व्यक्ति ने नि ने नारंगी रंग की शर्ट पहन रखी है।

पीछे के पर्दे लाल रंग के नजर आ रहे हैं।

झील के पीछे एक पहाड़ नजर आ रहा है।

लड़के ने गुलाबी और उजले रंग की टाय बांध रखी है।

पीछे दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं।

इसके निचले तल्ले पे स्टेट बैंक की एक ए_टी_एम लगी हुई है।

इस तस्वीर में एस_बी_आई योनो कैश स्टेट बैंक ऑफ का ए_टी_एम लिखा हुआ है।

तस्वीर मे कई सारे मेज नज़र आ रही है।

इस तस्वीर में कई सारे पंखे हैं।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति बैठा और एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है।

इस तस्वीर मे गणेश जी की मूर्ति है।

तस्वीर में दुर्गा माता महिषासुर का वध करती नजर आ रही है।

इस तस्वीर मे पीछे एक आइना है।

इस तस्वीर में एक लोग बैठा हुआ है।

यह यह किसी समारोह की तस्वीर है इस तस्वीर में पर्दों का रंग नीला हैं।

यह एक नए बस की तस्वीर है।

बस में कई सारी गेंदा की मलाये लटकी हुई है।

यह शायद किसी रेलवे स्टेशन की तस्वीर है।

तस्वीर में कई सारी ऑटो नजर आ रही है।

तस्वीर में एक हरे रंग का पेड़ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है।

इस व्यक्ति के कपड़े का रंग उजला है।

पीछे की दीवाल पर सैनिक और वेलकम लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में श्री अष्टविनायक लॉटरी सेंटर नाम की एक --

तसवीर में कइ सारे लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

एक औरत वहीं पर नीचे में बैठी हुई है।

एक औरत बुड़के में खड़ी है जो कि कहीं देख रही है।

यह एक व्यायाम शाला नजर आ रहा है।

इस व्यायामशाला में कुछ लोग बैठे हुए है।

यहां एक औरत व्यायामशाला में कुछ करती हुई नजर आ रही है।

इस तस्वीर में उजले रंग का प्लेट नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक हरे रंग की चटनी की कटोरी नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में एक केले के पत्ते पर खाना रखा हुआ दिख रहा है।

तस्वीर मे नाश्ता जैसा कुछ दिख रहा है।

शायद यह छठ पर्व की तस्वीर है।

इस तस्वीर में एक बड़ा बच्चा एक छोटे बच्चों को गोद में लिए खड़े हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन का चित्र है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति पीछे की ओर मुड़ कर खड़ा है।

तीसरा एक आधे बांह की कोट की तरह दिखता हुआ छोटा शेरवानी है।

एक ओर पीले रंग के गेंदे की फूल की माला नजर आ रही है।

यह छठ महा पर्व की तस्वीर है।

इस तस्वीर में सभी लोग हाथ जोड़कर के खड़े है।

एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ कर उसे बाहर शायद लेकर जा रहा है।

इस तस्वीर में नीचे बहोत पानी नजर आ रहा हैं।

यह तस्वीर किसी समारोह की है।

इस तस्वीर में एक औरत ने आसमानी रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

इस तस्वीर में कई सारे लोग खड़े होकर के शादी --

इस तस्वीर में पीछे के द की दीवालो का रंग पीला है।

पीछे के दीवाल पर कई सारे फूल और कई रंगों की तस की चीजे बनी हुई हैं।

तस्वीर के एक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है।

इस तस्वीर की दीवाल भूरे रंग की है।

इस तस्वीर में इमारत के एक तरफ शीशे लगे हुए हैं।

यह किसी किराने के दुकान की तस्वीर है।

इस तस्वीर में कई लोग अपना राशन लेने के लिए खड़े हैं।

इस तस्वीर में दोनों तरफ बोरियां रखी हुई है।

यह शायद कोई पुरानी ईमारत है।

तस्वीर मे पुरानी दीवारें नज़र आ रही है।

यह शायद किसी मेले की की तस्वीर है।

शायद इस मेले मे बहोत ज्यादा भीड़ है।

इस तस्वीर में बच्चों के झूला झूलने के लिए मिकी माउस झूला लगा हुआ है।

यह बहोत सारे टमाटर की तस्वीर है।

इसमें कई सारे टमाटर लाल नजर आ रहे हैं।

इन टमाटरों में कई सारे टमाटर अभी आधे पके हुए हैं।

यह शायद किसी कक्षा का तस्वीर है।

तस्वीर में एक खिड़की नज़र आ रही है।

पीछे दीवालों का रंग उजला है।

यह शायद किसी गुफा की तस्वीर है।

इस तस्वीर के आ में एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

गुफा की दीवारें पत्थर की बनी हुई नजर आ रही है।

व्यक्ति ने ठंड से बचने के लिए जैकेट पहन रखा है।

यह शायद किसी खुले मैदान की तस्वीर है।

इस तस्वीर में कई सारी कारें एक जगह पे लगी हुई नजर आ रही है।

इस तस्वीर में बहोत सारे व्यक्ति सब खड़े नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में पीछे कई सारे पेड़ भी नजर आ रहे है।

यह एक स्विमिंग पूल की तस्वीर है।

तस्वीर में एक छोटी बच्ची एक कुर्सी पर खड़ी हुई है।

दो व्यक्ति स्विमिंग पूल मे नहा रहे है।

इन कपो पर उजले रंग के ऊपर कई सारे रंग से डिजाइन बनी हुई है।

यह किसी समारोह की तस्वीर है।

इस तस्वीर मे आगे सफेद रंग की सोफे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में सोफे के पीछे कई सारी कुर्सियां रखी हुई है।

यह शायद किसी केक की तस्वीर हैं।

केक शायद किसी मेज पर रखी हुई है।

यह एक बड़े मैदान की तस्वीर है जिसमें मेला लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक टॉवर भी नज़र आ रहा है।

इस तस्वीर में एक हसीन खूबसूरत वादी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में चारों ओर हरियाली छाई हुई है।

एंड पहाड़ों पर कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह तस्वीर किसी मछली बाजार का लग रहा है।

तस्वीर में बहोत सारी मछलियां रखी हुई है।

तस्वीर मे नीचे मछली रखने वाला बक्सा रखा हुआ है।

तस्वीर में कई सारे लोग वहां खड़े हैं।

तस्वीर में एक औरत पीले रंग की साड़ी पेहने खड़ी है।

इस तस्वीर में बहोत सारे रंग बिरंगे पीले उजले हरे फूल नजर आ रहे है।

तस्वीर में चारों तरफ पानी नजर आ रहा है।

नदी के ऊपर एक पुल भी नजर आ रहा है।

पूल के नीचे कई पिलर भी लगे हुए है।

नदी के चारों तरफ पेड़ पौधे दिख रहें हैं।

इस तस्वीर में हरे हरे घास नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर कुछ फूल के भी पौधे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक कार नजर आ रही है।

तस्वीर में कार की मरम्मत करने वाली मशीने नजर आ रही है।

इस तस्वीर में गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा है।

इस तस्वीर में दो व्यक्ति नीचे बैठे हुए हैं।

सड़क के सामने कुछ मोटरसाइकिल और साईकले खड़ी है।

इस तस्वीर में दो व्यक्ति नाव से सफर कर रहे है।

इस तस्वीर मे चारों ओर पानी है।

इस तस्वीर में आसमान का रंग उजला है।

इस तस्वीर में एक ओर यूनियन बैंक लिखा हुआ है।

इस तस्वीर मे दूसरी ओर लिमिटेड बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है।

यहाँ कुछ मजदूर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं।

इस तस्वीर में गिट्टी बालू सीमेंट को मिलाया जा रहा है।

यहां दो मजदूर गिट्टी सीमेंट को मिल रहे हैं।

इस तस्वीर में चार बच्चे खड़े हैं।

एक बच्ची ने परी के वस्त्र धारण किये हुए है।